यहाँ पर अभी एक ट्रक दिखाई दे रहा है जो की अह ग्रीन और रेड और ब्लू कलर का है।

ग्रीन कलर का एक पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे है कुछ गाड़िया दिखाई दे रही है यहाँ पर और एक कार दिखाई दे रही है।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

और यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है जो की व्हाइट कलर की टी-शर्ट पेहन रहे है और कुछ बच्चे येल्लो कलर की टी-शर्ट पेहन रहे है बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है एक व्हाइट कलर की फूटबॉल है।

हमे कुछ लोग दिखाई दे रहे है। यहा पर एक खंबा खड़ा हुआ है। जिसके नीचे रंगोली बनी हुई है। इसमे ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन कलर के पेंट का यूज किया गया।